और कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो खिड़की से देख रहे हैं और बाकी सब कुछ--

अपना केयर कराने के लिए आए हैं और सभी लोग लाइन से खड़े हैं।

दवाईयां नीचे भी रखी गई है सामने एक टेबल रखा गया है और टेबल पर--

मुझे इस चित्र में एक किराना ईस्टोर दिखाई दे रहा है और किराना ईस्टोर पर--

और दीवाल पर मीटर भीं लगा हैं और सामान लटक रहा हैं मीटर दिख रहा हैं।

मुझे इस चित्र में एक विद्युत--

रूम दिखाई दे रहा है यह विद्युत हाउस प्रतीत होता है इसमें कई विद्युत कर्मचारी भी खड़े है।

जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मिसर इलेक्ट्रॉनिक जूसर और--

अपना सामान लेने के लिए खडे हैं और टोकन भी साथ मे लिएं हैं।

पौधा लगा है और इस गैलरी के सामने--

एक बिलिंग काउंटर की चेयर भी रखी गई है।

और कुछ लोग बाइक ले के चलते फिरते नजर आ रहे हैं और लाइट भी जल रही है।

सफेद कलर की लाइटें भी लगी हैं और कुछ लोग बाइक खरीदने के लिए अंदर भी खड़े हैं लाइन से।

और बच्चों की खिलौने की दुकान की अलमारी में बच्चों के कुछ प्लास्टिक के खिलौने--